ये एक नदी का चित्र दिखाई दे रहा है और इस नदी में कई सारा पानी वगैरह भरा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट का चित्र दिखाई दे रहा है और इस रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग खाना खाने आते हैं।

पुल पे कई सारे गाड़ियाॅं चलती हैं। इस पुल के अगल-बगल काफी सारे लोग भी --